पर्ल में if elsif एल्से और स्विच कंडिशनल स्टेटमेंट्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पर्ल में if elsif एल्से स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट
मैं उपयोग कर रहा हूँ उबंटु लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्ल 5142 मैं गेडिट टेक्स्ट एडिटर का उपयोग भी करुँगा
आप अपने पसंद के टेक्स्ट एडिटर का उपयोग कर सकते हैं
आपको पर्ल में वेरिएबल्स और कमेंट्स का सामान्य ज्ञान होना चाहिए
तथा फोर फोरिच व्हाइल और do व्हाइल लूप्स और इफ और if एल्से स्टेटमेंट का ज्ञान अतिरिक्त लाभदायक होगा
कृपया संबंधित स्पोकन ट्यूटोरियल्स के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाएँ
पर्ल में if elsif एल्से स्टेटमेंट का उपयोग मल्टिपल कंडिशन्स को टेस्ट करने के लिए किया जा सकता है और जब सभी कंडिशन्स निष्क्रिय होती हैं तो यह डिफॉल्ट एल्से ब्लॉक्स को निष्पादित करता है
if elsif एल्से स्टेटमेंट के लिए सिंटेक्स निम्न है इफ स्पेस ओपन ब्रैकेट कंडीशन क्लोज ब्रैकेट स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट एंटर दबाएँ
कंडिशन ट्रू होने पर निष्पादित होने वाले कोड का भाग सेमीकॉलन
एंटर दबाएँ
क्लोज कर्ली ब्रैकेट स्पेस एलसिफ स्पेस ओपन ब्रैकेट कंडीशन क्लोज ब्रैकेट स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट
एंटर दबाएँ
एलसिफ कंडिशन ट्रू होने पर निष्पादित होने वाला कोड का अन्य भाग सेमीकॉलन
एंटर दबाएँ
क्लोज कर्ली ब्रैकेट स्पेस एल्से स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट
एंटर दबाएँ
निष्पादित होने वाला कोड जब ऊपर की दोनों कंडिशन्स फलसे हो सेमीकॉलन
एंटर दबाएँ
क्लोज कर्ली ब्रैकेट
पहले इफ कंडिशन चेक और निष्पादित होती है यदि कंडिशन ट्रू है
यदि नहीं तो एल्से इफ कंडिशन चेक और निष्पादित होती है यदि यह ट्रू है
अन्यथा एल्से ब्लॉक में कोड निष्पादित होता है
अब if elsif एल्से स्टेटमेंट का एक उदाहरण देखते हैं
टर्मिनल खोलें और टाइप करें गेडिट कंडीशनलब्लॉक्स डॉट पीएल स्पेस एम्परसैंड और एंटर दबाएँ
यह गेडिट
में conditionalblocksपीएल फाइल खोलेगा
कोड के निम्न भाग को टाइप करें जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है
हमने वेरिएबल लैंग्वेज के लिए पर्ल वैल्यू निर्धारित की है
ध्यान दें कि ईक्यू स्ट्रिंग कंपेरिजन ऑपरेटर है
और फिर हमारे पास विभिन्न कंडिशन्स है जिन्हें हम चेक करना चाहते हैं
अब फाइल को सेव करने के लिए ctrls दबाएँ
फिर टर्मिनल पर जाएँ और फाइल को सीधे निष्पादित करें
टाइप करें पर्ल कंडीशनलब्लॉक्स डॉट पीएल ध्यान दें मैं कंपाइलेशन स्टेप को छोड रहा हूँ
यह पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करने के लिए जरुरी स्टेप नहीं है
यदि यहाँ कोई कंपाइलेशन एरर है निष्पादन एक एरर दिखायेगा और स्क्रिप्ट का निष्पादन रोक देगा
अब एंटर दबाएँ
टर्मिनल पर आउटपुट दिखता है ही आई एएम पर्ल अब अपने अगले केस को देखते हैं
गेडिट
पर जाएँ
वेरिएबल लैंग्वेज के लिए जावा निर्धारित करें जैसा दिखाया गया है
फाइल को सेव करने के लिए ctrls दबाएँ
टर्मिनल पर जाएँ और फाइल को निष्पादित करें
टाइप करें पर्ल कंडीशनलब्लॉक्स डॉट पीएल और एंटर दबाएँ
टार्मिनल पर आउटपुट दिखता है ही आई एएम जावा फिर से गेडिट पर जाएँ
अब लैंग्वेज वेरिएबल के लिए इंग्लिश निर्धारित करें
फाइल को सेव करने के लिए ctrls दबाएँ
टर्मिनल पर जाएँ और फाइल को निष्पादित करें
टाइप करें पर्ल कंडीशनलब्लॉक्स डॉट पीएल और एंटर दबाएँ
टर्मिनल पर आउटपुट दिखता है आई एएम नोट आ कम्प्यूटर लैंग्वेज तीन केसेस दर्शाते हैं केवल एक इफ ब्लॉक जो कंडिशन पूरी करता है निष्पादित होगा
अन्यथा डिफॉल्ट एल्से ब्लॉक निष्पादित होगा
इसी तरह से हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारे पास मल्टिपल एलसिफ कंडिशन्स है
यहाँ आपके लिए नियत कार्य है
प्रिंट करने के लिए if elsif एल्से स्टेटमेंट लिखें आई एएम आ साइंस ग्रेजुएट यदि वर्ग विज्ञान है
आई एएम आ कमर्स ग्रेजुएट यदि वर्ग वाणिज्य है
आई एएम एएन आर्ट्स ग्रेजुएट यदि वर्ग न विज्ञान और न ही वाणिज्य है
अब स्विच स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं
पर्ल 58 तक यहाँ पर्ल में कोई भी स्विच स्टेटमेंट नहीं था
उसके बाद स्विच मॉड्यूल का परिचय हुआ जो स्विच स्टेटमेंट की व्यावहारिकता प्रदान करता है
ध्यान दें पर्ल में मॉड्यूल्स आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे
स्विच का सिंटेक्स निम्न प्रकार से हैः उसे स्विच सेमीकॉलन
एंटर दबाएँ
स्विच स्पेस ओपन ब्रैकेट डॉलर वैल्यू क्लोज ब्रैकेट स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट
एंटर दबाएँ
केस स्पेस 1 स्पेस ओपन क्ली ब्रैकेट एक्जिक्यूट्स व्हेन डॉलर वैल्यू इक्वल टो 1 क्लोज कर्ली ब्रैकेट
एंटर दबाएँ
केस स्पेस सिंगल कोट आ सिंगल कोट स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट एक्जिक्यूट्स व्हेन डॉलर वैल्यू इक्वल टो सिंगल कोट आ सिंगल कोट क्लोज कर्ली ब्रैकेट
एंटर दबाएँ
एल्से स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट एक्जिक्यूट्स व्हेन डॉलर वैल्यू डोएस नोट मैच एनी ओएफ थे केसेस क्लोज कर्ली ब्रैकेट
एंटर दबाएँ
क्लोज कर्ली ब्रैकेट
सेम्पल प्रोग्राम का उपयोग करके स्विच को समझते हैं
टर्मिनल खोलें और टाइप करें गेडिट सेम्पलस्विच डॉट पीएल स्पेस एम्परसैंड और एंटर दबाएँ
अब सेम्पल प्रोग्राम टाइप करें जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है
अब समझते हैं कि स्विच स्टेटमेंट कैसे कार्य करता है
उसे स्विच स्टेटमेंट पर्ल कोड में स्विच मॉड्यूल सम्मिलित करता है
ध्यान दें हम उसे कीवर्ड के बारे में विस्तार से आने वाले ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे
अब हम भिन्न केसेस टेस्ट करेंगे
हमने var वेरिएबल के लिए पर्ल निर्धारित किया है
वेरिएबल var में वैल्यू स्विच स्टेटमेंट में चेक होती है
पहले केस में यह पर्ल केस के साथ मैच होता है
अतः इस केस के लिए लिखा गया कोड निष्पादित होगा
फाइल को सेव करने के लिए ctrls दबाएँ
अब टर्मिनल पर जाएँ और पर्ल sampleswitchपीएल स्क्रिप्ट निष्पादित करें
एंटर दबाएँ
टर्मिनल पर निम्न आउटपुट दिखता है
आई एएम पर्ल गेडिट में sampleswitchपीएल पर वापस जाएँ
अब वेरिएबल var के लिए लिनक्स निर्धारित करें
फाइल को सेव करने के लिए Ctrl एस दबाएँ
फिर से वेरिएबल var की वैल्यू स्विच में चेक होगी
यह लिनक्स केस के साथ मैच होता है
अतः इस केस के लिए लिखा गया कोड निष्पादित होगा
टर्मिनल पर जाएँ और पर्ल sampleswitchपीएल स्क्रिप्ट निष्पादित करें
एंटर दबाएँ
टर्मिनल पर निम्न आउटपुट प्रदर्शित होता है
आई एएम लिनक्स गेडिट में sampleswitchपीएल पर जाएँ
इसीतरह यदि वेरिएबल var की वैल्यू जावा होगी तो दूसरा केस चेक होगा
अब वेरिएबल var के लिए इंग्लिश निर्धारित करें
फिर से वेरिएबल var की वैल्यू स्विच में चेक होगी
यह किसी भी केस स्टेटमेंटेस के साथ मैच नहीं होता है
अतः एल्से स्टेटमेंट निष्पादित होगा
अब टर्मिनल पर जाएँ और पर्ल sampleswitchपीएल स्क्रिप्ट निष्पादित करें
और एंटर दबाएँ
टर्मिनल पर निम्न आउटपुट प्रदर्शित होता है
आई एएम नोट आ कम्प्यूटर लैंग्वेज 3 केसेस दर्शाते हैं कि केस को निष्पादित करने के लिए एक्सप्रेशन की वैल्यू निर्धारित करती है
केवल मान्य केस निष्पादित होगें औऱ जब यहाँ कोई भी मान्य केस नहीं है तो डिफॉल्ट एल्से केस निष्पादित होगा
एल्से केस लिखना जरुरी नहीं है
ऐसे परिदृश्य में यदि कोई भी केस मैच नहीं होता है तो यहाँ स्विच स्टेटमेंट से कोई भी आउटपुट नहीं आयेगा
यहाँ आपके लिए एक अन्य नियत कार्य है
इस ट्यूटोरियल में पहले दिये गये पिछले नियत कार्य को स्विच स्टेटमेंट का उपयोग करके पुनः लिखें
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा सेम्पल प्रोग्राम का उपयोग करके पर्ल में if elsif एल्से स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट
निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है
यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं